इस दृश्य में बहोत सारा गाड़ी दिखाई दे रहा है।

दृश्य में बहुत सारा व्यक्ति है जो काम कर रहे है।

पीछे पंखा दिखाई दे रहा है जो बंद है।

यह दृश्य एक पेट्रोल पंप का है।

बहोत सारा लाइट लगा हुआ है जो सफेद रंग का जल रहा है।

सामने बहोत सारे कुर्सी दिखाई दे रहा है टेबल दिखाई दे रहा है।

बगल में खिड़की है जिसमें शीशा लगा हुआ है।

पीछे में घर दिखाई दे रहा है जिसका रंग नीला है।

पीछे में बहोत भी बढ़िया छोटा सा झरना दिखाई दे रहा है जिससे पानी आ रहा है।

में बहुत सारा लाइट जल रहा है जिस का रंग सफेद है।

पीछे घर है जिसमें खिड़की दी हुआ है और घर का रंग गुलाबी है।

इस दृश्य में एक कैमरा है जो सफेद रंग का है।

सामने में बहुत से बड़ा झूला लगा हुआ है पीछे पानी का पार्क है।

पीछे मिट्टी का टीला उठा हुआ है उसकी रि बगल में बहुत सारा हरा ओरा घास उगा हुआ है।

इस दृश्य में हम लोग दो तीन व्यक्ति को देख सकते हैं जो अलग अलग कपड़ों में है।

छड़ भी दिखाई दे रहा है एक पाइप दिखाई दे रहा है।

सामने में किन्ही भगवान का फोटो है जिनका अगल बगल फूल है।

इस दृश्य में सामने में एक पंखा है जिसका रंग सफेद है और बहुत सारे लोग खड़े हैं।

सामने में भी बहोत सारा फूल का माल रखा हुआ है जिसका रंग अलग अलग है।

इस दृश्य में बहुत सारा लोग दिखाई दे रहा है जो अलग अलग कपड़ा पहना हुए है।

जो बैठे हुए हैं वो मछ्ली बेच रहे हैं।

इधर एक व्यक्ति चपल पहना है जिसका रंग सफेद है।

लाल रंग का लाइन बना हुआ है।

काउंटर के ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

फोनपे का दिखाई दे रहा है उसके बगल में बहुत सारा पाठ रखा हुआ है किसी चीज का सेल में।

कुछ और चित्र बनाए हुए है कुर्सी के ऊपर कलाकारी के माध्यम से।

इस दृश्य में हम लोग बहुत सारे कुर्सी देख सकते हैं और सामने में टेबल देख सकते हैं।

ऊपर में कुछ जाली टाइप में छत बनाया हुआ है।